यओ अंकल एक और बुक खरीद रहे है और बुक के द्वारा फोटो खिचवा रहे है ये एक लाइब्रेरी है | यहाँ से के बुक यही पे लख दीजिये | यहाँ पर अच्छी पढ़ाई की जाती है ।

यह एक एटीएम है। यहाँ पर बहोत-सी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर वो भी मिलते हैं। एक चद्दर मिलते हैं यहाँ पे सिमेंट एवम स्टील वाले देखो यहाँ पर।

यह- यह एक चाट का ठेला है इस चाट वाले अंकल चाट बहोत अच्छा बनाते हैं और गोलगप्पों का पानी भी अच्छा बनाते हैं।

यहां पे एक दम फ्रेश मछलियाँ बेचते हैं अच्छी- अच्छी मछली ये कुछ सफ़ेद और काली कलर की मछली हैं अच्छे दाम में बेचते हैं भाई ये।

कुछ भी करा लो भाई लोगों यहाँ पर इंटर इंटरनेट भी है और बगल में बाइकें भी खड़ी एक अंकल बाइक को पार्क करके अंदर जा रहे अच्छा भाई लगता है यहाँ पर।